इसमें पटरी भी दिख रही है कुछ यहाँ आपको गिट्टी भी दिख री है औरयहाँ पे कुछ लाइट के खम्भे भी आपको दिख रहे है जिसकी सहायता से ट्रेन चलती है और यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे भी आपको दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में हमे एक नाईट का व्यू दिया गया है। ये किसी गार्डन का पिचर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा स्विमिंग पूल बना गया है। यां ए स्विमिंग पूल में लाइट्स लगी है यहाँ पे।

आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ साइकल्स भी रखी हैं और कुछ लोग यहाँ पे गाड़ी से जा भी रहे हैं और ये जो बिल्डिंग है इसमें काफी सारे यहाँ पर आपको गेट और खिड़ --

पर और पर्दो से किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पिंक व्हाइट पर्पल कलर के यहाँ पे (पर) बैलून लिए है और बर्थडे पार्टी --

इस इमेज पे हमे एक ग्राउन्ड की पिक्चर दी गयी है और इस और इस ग्राउन्ड मे कई व्यक्ति है जो यंहा पे क्रिकेट खेल रहे है।

यहाँ एक चेयर भी रखा है एक व्यक्ति है जो यहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा लेके खड़ा हुआ है और दो व्यक्ति है जो यहाँ पर हाथ में तसला या तगाड़ी लेके रखे --

ब्रिज में हम एक नदी के पास एक ब्रिज बना है।